अ घर जैसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे --

यह एक बहुत बड़ा मंदिर का तस्वीर है।

जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका कलर जो है।

और ये पॉट मट्टी का बना हुआ है।

इसमें बहुत बारीकी से वर्क किया हुआ है लकड़ी का बहुत नये-नये वर्क किया हुआ है ।